कुछ बॉटल्स वगैरा भी दिख रही है जो छोटी छोटी है।

अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान रखा हुआ है और लाइटें भी जल रही हैं।

फोटो में एक मैरेज हॉल दिखाई दे रहा है।

टेबल रखी हुई है टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है।

और मैरिज हॉल के अंदर चेयर ही चेयर टेबल रखी हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में कुछ पोछा वगैरा सामान है।

इस फोटो में एक गैराज जैसा दिख रहा है।

और चारों तरफ बाउंड्री दिख रही हैं।

जो ईंटें से बनी पत्थर से बनी हुई है।

इस फोटो में एक बड़ा सा माल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर स्टैचू में--

और बाहर द चेनई सीप का बोर्ड भी लगा है।

इसके अंदर कारपेट लग बिछी हुई दिख रही है।

और टेबल भी रखी हुई है टेबल के ऊपर भी कुछ ब्लू कलर का रखा है।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

और इ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और दोनों तरफ गधा बना हुआ है।

जिसके बाहर एस_बी_आई स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

बैंक के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है स्कूटी बाइक वगैरह--

इसके पीछे पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे घने घने पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा है और एक बच्चा भी है।

सीटे भी लगी हुई है सीटों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जिनके हाथ में मशाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में बहुत सारी चेयर वगैरह दिखाई दे रही हैं।

नदी बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है और गहरी है।

जमीन में टायर वगैरा पड़े हुए हैं वो कार भी खड़ी है काउंटर रखा हुआ है।

फोटो में एक भवन जैसा बना हुआ है।

रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

गमले भी रखे हुए हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं गमले दोनो तरफ रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ हैं।

इसके अंदर बहुत सारी चेयर टेबल दिख रही है।

इसके अंदर दोनों तरफ अलमीरा रखी हुई है।

और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं छोटे बड़े।

बिल्डिंग जैसे भी कुछ घरि वगैरा बने हुए हैं।

बहुत सारे हैंडल वगैरह लॉकेट और अदर चीजें भी लगी हुई हैं।

और बाहर स्टीकर लगा हुआ है जिस पर पंद्रह रुपए लिखे हुए हैं।

कुछ लेडिज भी दिखाई दे रही हैं और एक आदमी शॉप के अंदर है।

इस फोटो में बिल्डिंग जैसा कुछ दिख रहा है।

उस फोटो में एक कैफे दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे लोग बैठे हैं और फोटो फ्रेम भी लगे हुए हैं।

रात का समय है और लाइटें जल रही है।

पेड़ के आगे कच्ची मिट्टी दिख रही है।

और एक टी_वी जैसी दिख रही हैं।

और अंदर बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।